जिनमें में टेबल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस नदी के कोने में बहुत सारी पेड़ पौधे भी देखने को मिल पा रही है।

यहां में गाड़ी बाइक भी पार्क करके दिखाई दे रही है।

और फिर ऐसा डिजाइन मे बहुत सारे पेड़ भी देखने को मिल रही हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी मछली देखने को मिल पा रही है।

मुझे इस तस्वीर में जिम दिखाई दे रही है।

यहां मे बहुत सारी कपड़े और बहुत सारी सामान सब दिखाई दे रही है।

कि एक अंकल भी चलती हुई दिखाई दे पा ड़हा है।

और इस घर में बहोत सारे आदमी लोग चलते हुए भी दिखाई दे रहा है।

और फिर यहां में बहुत सारी छोती छोती पत्थर भी दिखने को मिल रही हैं।

के ऊपर में भी एक आदमी दिखाई दे रही है।

ई कॉर्नर कार्नर में बहुत सारी सामान सभी रखा हुआ दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक लड़का जिम में फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है।

बस में इंडियन के फ्लैग भी ड्राइंग करके दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में दो लेबर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये दोनों लड़के रेड कलर की कुछ पहनके दिखाइ दे पा रहा है।

यहां में ऑरेंज भी रखा हुआ दिखाई दे रही है।